आसा ऑफिस है जिसमें बलून्स लगे हुए हैं और ऑफिस के अ लेफ्ट साइड में गेट है जिसमें माला लगी हुई है।

चेयर भी रखी हुई है जो कि एक बैंक लग रहा है जिसमें सामने एक ब्लैक कलर की चेयर है और म्म्म बोर्ड डेकोरेट हुआ हुआ --

साथ में पेड़ हैं और काफी खूबसूरत लग रहा है ये। इसमें पेड़ है ऊपर आसमान का छाया नीचे --

है यह कोई घेर है। इसमें एक गेट भी है। दो पिलर लगे हुए हैं। आस-पास दीवारें हुई हुई हैं। अ --

पे तीन खिड़कियां है ऊपर नीचे जिसमे एक मेन गेट है बड़ी-बड़ी लेफ्ट साइड में है छोटी-छोटी राइट साइड में है।

बड़ा स्टेडियम है। जिस में कुछ लोग घूम रहे हैं। कुछ लोग खड़े हैं। कुछ लोग खेल रहे हैं। कुछ लोग बात कर रहे हैं।

पहाड़- ये पहाड़ है झुकते ऊपर-नीचे ऊपर-नीचे ऊबड़-खाबड़ पहाड़ ये है।